यहाँ पे कुछ लोगो के हाथ में पर्ची भी है।

कुछ खम्भे भी लगे हुए है।

यहाँ पे आस- पास पेड़ दिख रहे है हरी -हरी छोटी घास है।

यहाँ एक खेत दिख रहा है खेत के बाहर एक बाउंड्री बॉल खींची हुई है जिसमे जालिया लगी हुई है।

साइड में एक नाव भी खड़ी हुई है पीछे एक आदमी है जो बहोत बड़ा डंडा लेके खड़ा हुआ है ।

सोफे के ऊपर एक ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ है यहाँ काउंटर है ब्लैक कलर का उसके अंदर एक लड़का दिखाई दे रहा है।

यहाँ कुछ लड़के लोग खड़े हुए है और लड़के हस रहे है।

यहाँ बहोत सारे लोग बैठे हुए है यहाँ पे--

बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए है यहाँ पे सामने एक डंडा भी--

यह एक सुखी पहाड़ी दिख रही है पहाड़ी में छोटे -छोटे पेड़ उगे हुए दिख रहे है।

यहाँ बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहाँ मंडप के निचे बैठी हुई हैं।

यहाँ एक बहोत बड़ी नदी दिख रही है नदी के ऊपर से एक ब्रिज बनाया गया है पूल --

जुले अलग-अलग प्रकार के लगाये गए हे।

ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ है व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

अलग -अलग बॉक्स में पुरे कपड़े रखे हुए है।

कुछ जर्सीयाँ भी खड़ी हु रखी हुई है।